यह एक ऊँची बिल्डिंग का तस्वीर है।

बेंगनी कलर का पर्दा है और सफेद कलर का टाइल्स सफेद कलर का दिवाल है। पीछे एक लकड़ी का वो लगा हुआ है टाई।

सव सुबह का टाइम है करीब सात बजे के आस पास --

ये एक फूल की दुकान के बाहर का शॉप जहा फूल मालाये रखी हुई है। एक लोटस का भी प्लांट जोकि पूरा खिला हुआ है और एक लोटस का प --